ऊपर से बहोत ही अच्छा व्यू दिख रहा है।

यहां पे रात का टाइम में बहुत सारी बाइक बहुत सारी बाइक्स यहां पे खड़ी है।

यहां पे एक ट्रेन जा रही है पटरियां है ट्रेन की।